बच्चे कपड़े लेने आ रहे हैं इनकी मम्मी इनके साथ में है कितनी सुंदर दुकान है अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं।

बहोत सुंदर दिखाई दे रही है प्यारी प्यारी है यहां सारा सौदा मिलता है चावल ले लो--

दाल ले लो चीनी ले लो पत्ती ले लो कुछ भी खरी--

सब आदमी आते हैं यहा गाड़ी भी खड़ी होती है पार्किंग भी है।

रास्ता बिल्कुल साफ है। बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

कंपनी है या घर है ऐसा ही दिख रहा जैसे घर हो बहोत सुंदर दिखाइ रहा--

और बड़ी कंपनी सी लगती है यहां सब कुछ ठीक होता हुआ--